किसी भी चीज़ प्राप्त कर सकते जिस चीज़ का वो शोरूम है वहाँ से हम कुछ भी प्राप्त ले सकते हैं मनी देके जैसे कार का शोरूम हो गया बाइक का शोरूम हो गया।

सिर के ऊपर से निकलती हैं जो बहोत --

तालाब तालाब ऐसे जगह हैं जहां जादा अधिक पानी बहता है तो वहाँ जादा पानी जमा हो जाता है वहाँ तालाब बन जाता है। तालाब बहुत --